यहाँ पे इ एक कार खड़ी है काले रंग की और नीले रंग का कुछ है यहाँ पे उसमे छोटू सा ढंकन है और वहा पे दो टीन की दीवाल जैसे दिख रहे है।

यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जैसे लग रहा है यहाँ पे एक जे_सी_बी आयी है जो कि गड्ढा खन रही है और वहां पे तीन व्यक्ति है जो बता रहे हैं कि--

और ये ब्लैक कलर में इनका स्किन को किया गया है और इनके कपड़े को थोड़ा येलो टाईप का कलर किया गया है और पीछे का दीवाल थोड़ा फटा जैसे दिख रहा है।